बड़ा सा बोर्ड टांगे गए है उस पे लिखा हुआ है अजय उघान नगर परिषद लोहरदगा।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा बुक स्टोर दिख रहा है।

ऊपर में एक और बड़ा सा बोर्ड टांगा गया है जिस पे येलो कलर का बोर्ड है हाउस लिखा दिखाई दे रहा है।

बगल में गुमती टाइप का दुकान बनाया हुआ है एक बाइक भी बनाया हुआ बाइक है।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा मेन सैलून है जिस पे लिखा हुआ है बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून ।

इस तस्वीर में सामने एक डाकघर दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा हुआ है डिप्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस इंडिया ।

यह जो बॉक्स है वो रेड और ब्लैक कलर में है और इस पे यह भी लिखा हुआ है भारतीय डाक।

लाइक कुछ मोबाइल बनाने वाले एक साइड रखे हुए हैं और एक गाड़ी वाड़ी रखा हुआ है।

घड़ी लगाया हुआ है एक और बलूंस भी लगाया हुआ है यहां पे ब्लू और ग्रीन कलर में।

तस्वीर में बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कहीं पानी वानी ऋषिकेश वगैरा का सीन है पानी में सब वोटिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं।

यहां पे कुछ लेडिस कुछ जेंट्स शॉपिंग कर रहे हैं और मछलियां खरीद रहे--

तस्वीर में सामने एक टेबल बनाया हुआ है उस पे लैपटॉप्स वगैरा रखा हुआ है और फाइल्स वगैरा--

कुछ कुछ किचेंस आइटम्स दिखाई दे रहा है हर प्रकार का मान दिखाई दे रहा है काउंटर बनाया हुआ है जिस पर एक आदमी बैठा है उसे पर रजिस्टर भी रखा गया है।

यहां पे दो लोग मिलके कार धो रहे है दोनों के पास बाल्टियां है और एक टायर धो रहा--

जो कि हरे कलर के हैं कुछ पीले भी दिखाई दे रहे हैं कुछ ब्राउन --

प्लस का साइन बनाया गया है जोकि क्रिश्चियन्स के गॉड होते हैं।

ये कोई क्रिश्चियन रिचुअल्स फॉलो किया जा रहा है पीछे इनके फोटोस लगाया गए हैं इनके रिलिजन के।

यहां पे जो जो चीज मिलता है वो सब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है।

कराकट से पूरा छाया हुआ है उधर पे बहुत सारे लोहा का सामान रखे हुए हैं दिन का समय है रोशनी आ रही है बाहर से।

यह स्टेशन पे का सीन है जहां पर रेलवे स्टेशन पे का।

यहां पे बहुत सारे पार्किंग एरिया बनाया जाता है सिटिंग एरिया रेस्टिंग एरिया आप जो बोलिए।

और बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं और मिट्टी का पहाड़ टाइप का छोटा सा बनाया हुआ है।

सामने रेड कलर की चेयर्स लगाई हुई हैं बहुत सारे लोग हैं जो की सामान खरीदने आए हैं जो की समान देख रहे हैं लाइटें जल रही हैं।

पाकट का अह छाया हुआ है यहां पे।

दूसरा है कादरी वस्त्रालय रेडीमेड कॉर्नर।

तीसरा है सिस्कॉन थर्मैक्स टी_एम_टी बार्स।

शिप में कुछ लोग भी हैं और हर तरह का फैसिलिटी दिया हुआ है उस शिप में एक नाव भी दिखाई दे रहा है।

मौसम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है शाम का या सुबह का समय है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है ज्वेलरी शॉप का सीन ।

लगाए हुए है तीन जगह और बड़े बड़े पोस्टर्स टांगे हुए है लाइटे जल रही है झूमर रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो की कराटा ड्रेस पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं।

बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं दिन का समय है पूरा उजाला दिख रहा है।

पर्पल कलर का रेस्टोरेंट का पेंट किया हुआ है बाहर से औ--